और अब इस के बाजु में भी दुकान है बहुत सुन्दर अच्छा दुकान है बहोत अच्छा लग रहा देख--

ये बहोत ही सुन्दर लग रहा है देखने में और एक लड़का भी है खड़ा है जोकी--

निकने नजारा मेरा उधर घर भी है दिखाई दे रहा है।

बहोत सुन्दर फूल वाइट और पिंक कितना अच्छा लग रहा है बहोत ही अच्छा लग रहा है. छोटा-छोटा घास भी दिखाई दे रहे है मैचिंग बहोत ही सुन्दर--